मैं सामने एक बड़ा-सा मैदान देख पा रही हु और मैदान के सामने एक बड़ा-सा बिल्डिंग दो तल्ला देख--

नहाने उतरे है और यहाँ पर सूरज जो है ढल रही है शाम की नजारा है बहुत ही अच्छी लग --

और द बाएं साइड में एक गार्डन है जो कि खुबसूरत-खुबसूरत पौधा फ्लावर से ए पूरा भरा हुआ है और पीछे में एक दो तल्ला तीन तल्ला मंजिला देख पा रही हूँ जो कि पिंक कलर का है।

इसको देख के लग रहा हैं ये क्लास रूम के अंदर का फोटो हैं क्योंकि यहाँ पर सब चेयर टेबल लगा हुआ हैं दाहने बायें साइड में एक लाइन से और ये जो दीवार हैं सामने में वहाँ पर दो बोर्ड लगी हुई हैं।

के कोई गाँव का घर लग रहा है और यहाँ पे पेड़-पौधा भी बहुत सारी है।

जो वहाँ पर खेती हो रही है बीच से पानी का जाने का रास्ता बना हुआ है और ये वाला बांस --